यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहोत सारा शॉप है।

और दूर से देखने पर एक घर जैसा भी दिख रहा है जो कि ऑरेंज और ग्रीन कलर का है।

कोई दिखाई नहीं दे रहा है दूर-दूर तकक चेयर कुर्सी रखा हुआ है और --

सलवार पहनी हुई है और काला कलर का छाता ली हुई है।

सड़क भी दिखाई दे रहा है जिस पर एक बूढ़े अंकल साइकिल चला कर जा रहे है और यहाँ पर एक --

चूँकि यहाँ पर एक पोस्टर लगा है बोहोत बड़ा।

लग रहा है की इंतजार कर रहे हैं।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जोकि देखने में ऐसा लग रहा है कि यह कोई घूमने की जगह है। यहाँ पर बहोत बड़े-बड़े --

वाइट कलर का है और अंदर में ऑरेंज कलर का है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई घर जैसा है। यहाँ पर --

देखने में ऐसा लग रहा है कि यह कोई पिरामिड जैसा जगह हो।